सुविधाएं हैं बहुत ही काफी सुविधा है एक यहाँ पे स्टाप भी है जो की --

देखिये भाई यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा फैक्ट्री है जो कि देखिये इस फैक्ट्री में एक आदमी --

कैलेंडर भी लगाए हुए हैं कैलेंडर भी बेचते है भैया

इ तो गाड़ी जा रही है इ टेस्टी रंगीन दवा --

देखो यहाँ पे कितना हरा-भरा है जो की देखने मे बहुत ही सुंदर --

एगो बाइस के जी.एन.पी.जे से ड्राई क्लीनिंग स्टील आयरन और स्टेन --

देखिए और कितने बड़े यहाँ पे सत्य मेव जय जयते का फोटो लगाया हुआ है।

बड़ा घर है जी की इसपे एक भेपर लगा हुआ है बहुत ही खतरनाक घर दिख रहे है जो की --

काफी खूबसूरत से जो की देखने में बोहोत ही अच्छा लग रहा है देखिये कितना अच्छा है जो की काफी खूबसूरत लग रहा है ।

देखिए भाई यहाँ पे कंप्यूटर है चूंकि ये कंप्यूटर बहुत ही सुंदर --